खूब बड़ा के मेरिज हाल बाटे जे मे ढेर सारा समान रखल गईल बा कुर्सी रखल गईल बा डाइनिंग टेबल रखल गईल बा।

पिज़्ज़ा के ऊपर वाइट कलर के चटनी गिरल बा। ला छोटे छोटे लाल कलर के टमाटर बाटे ओजू। बगल में हरियल कलर के सामान रखल गइल बा।